यहाँ पर देखिये आपको डमी दिखाई देंगे| बाहर देखिये डमी में लेहेंगे लहेंगे का रेड कलर का पहना हुआ है | उसके बगल में एक सूट है| यहाँ पे देखिये आपको मेज एक--